ये जिम का फोटो है।

फैन लगा है बहोत सारा।

बिल्डिंग है रस्सी वस्सी है।

ये फोटो में एक लड़का बैठा हुआ स्कूटी या बाइक पे--

बहुत सारा आदमी खड़ा हुआ दुकान का बाहर भीर है।

इस फोटो में नीचे जापी बनाया हुआ हैगोल्डन कलर से और एक--

गमछा का भी पिक्चर बनाया है।

घर ओर है व्हाइट कलर का पेंट है उसका--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

गाय है गाय को बांध के रखा है ग्रीन कलर का रस्सी से।

पानी है पानी के अंदर बहुत सारा पत्ता है।

लाइट सिल्वर कलर का है है।

ऊपर लाइट लगा हुआ है।

इधर बोर्ड रखा हुआ है।

घर है पिंक कलर का ऊपर टीना लगा है ब्लू कलर का आगे गेट है ग्रिल ग्रिल का ब्लैक कलर का।

एक आदमी सोया हुआ है।

पीछे बहुत सारा आदमी है।

लड़का मास्क लगा के बैठा हुआ है ब्लू कलर का कपड़ा पहना है।

पीछे बुक रखा हुआ है बहुत सारा।

इस चित्र में एक बिल्डिंग है।

एक बोर्ड लगा हुआ है।

नूडल्स का काउंटर है।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

तबला का नीचे टूल है।

व अ घर का कलर है व्हाइट ब्राउन ।

नीचे मार्बल लगा हुआ है।